सामने दिखाई जा रही फोटो में आप देख पा रहे हैं कि--

हमें दिखाई पड़ रही है और ये किसी दुकान का एक फोटो है जिसमें बच्चों के खिलौने--

हरे हमें फूल नजर आ रहे हैं पीछे यहां एक फ्रेम में टोकरियां भी नजर आ रही हैं जिनमें भी फूल रखे हुए हैं और हमें बहोत सारी --

यह कत्थक प्रस्तुत कर रही है और हम देख पा रहे हैं कि पीछे ही महादेव की प्रतिमा भी है और--

और बहुत सारी कुर्सियां इसमें हमें--

और साथ में ही लिखा है महेक।

बेल्ट्स नजर आ रही है जो टंगी हुई है और शूज --